उपर आसमान दिखाई दे रहा है जो हल्का सफ़ेद और आसमानी दिख रहा है।

मालाओ से सजावट की हुई है मालाओं का रंग गुलाबी है सामने दीवारो का रंग सफ़ेद है सभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए है सभी के हाथो में किताब है।

यहाँ एक सडक दिखाई दे रही है सडक पर गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है एक गाडी का रंग भूरा एक का --

यहाँ कुछ पानी नजर आ रहा है पानी के अंदर बोट खड़ी हुई है बोट के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने लाल रंग का एक शर्ट पहना हुआ है।

पेड़ नजर आ रहे है पेड़ का रंग हरा है उपर आसमान का रंग पर्पल और सफ़ेद नजर आ रहा है।

यहाँ एक पेड़ नजर आ रहे है नीचे मिट्टी है जिसका रंग भूरा है पेड़ो का रंग हरा है।

उपर आसमान नजर आ रहा है आसमान का रंग सफ़ेद दिख रहा है सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग का रंग सफ़ेद है।

नीचे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो का रंग हरा है कुछ पेड़ो के पत्ते लाल दिखाई दे रहे है नीचे सुखी घास दिखाई दे रही है।

दो गाड़ियों का रंग काला और एक का लाल है उसके साइड में एक और गाडी खड़ी हुई है जिसका रंग सफ़ेद --